यह एक जिम है जहाँ पे सारे लोग जिम करने आते हैं और अपने आप को फीट रखते हैं। यहाँ के ट्रेनर बहुत ही अच्छे हैं और ये जिम भी बहुत अच्छा है शांति माहौल है कोई दिक्कत नहीं है।